गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है सामने एक बस खड़ा है और बहोत बड़ा फील्ड है और इसको ग्रीन कलर के पेंट से पेंट किया गया है।

और एक औरत भी नजर आ रही है।

एक आदमी खड़ा नजर आ रहा है हाथ में खैनी को बनाते हुए।

यहां रेल जाती हुई नजर आ रही है किनारे पर बहोत सारे हरे हरे घास है।

प्रेज़ रखे हुए है ए_सी लगा है लाइट जल रहा है।

एक आदमी बाइक पर हैं और बड़े बड़े खंभे भी नजर आ रहे हैं।

एक सीढ़ियां बनाई गई है आस पास लोग खड़े नजर आ रहे हैं पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े खंभे भी नजर आ रहे हैं।

मैं ये देख पा रही यहां दीवाल है दीवाल को बहुत अच्छी अच्छी रंगीन रंगीन टाइल्स लगी हुई है अच्छे अच्छे चित्र है।